यहाँ पर चारों तरफ व्हाइट व्हाइट घर दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक बहोत बड़ी मूर्ति बनी है जो वाइट कलर की है आस-पास काफी बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं और आसमान काफी वाइट भी नजर आ रहा है।

यहाँ पर कुछ सब्जियाँ रखी हुई है टमाटर गाजर निम्बू धनिया और यहाँ कुछ बोरे भी रखे हुए है।

यहां लिखा है यूनियन बैंक ये यूनियन बैंक के बारे मे लिखा है।